प्रकास बुक प्लेस लिखी हुई है इस पर।

पीछे भी कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है मशीनरी --

पानी भी है भरा हुआ छोटी-सी तालाब जैसी बनी हुई है यहाँ पे।

इसपे कार्टून की तस्वीरे बनी हुई है बाहड़ इनकी --